इसके ऊपर एक पेर है जो ब काफी बरा लग रहा है और यह पेर पानी में परछाई के रूप दिखाई दे रा हे।

जो पत्थर से बनाया गया है।

पौधा छोटा है लेकिन बहोत अच्छा लग रहा है देखने में--

कुछ लोग माक्स में हैं और कुछ बिना माक्स के यहां पे महिलाएं और जेंस दोनों हैं।

किसी का रंग रेड है किसी का व्हाइट किसी का--

यहां बोहोत ही अच्छा सो खिल रहा है यहां का वातावरण भी--

यहां पे दो महिलाएं हैं जो ग्रीन और गोल्डन कलर के साड़ी को पहनी हुई है यह दृश्य बहोत ही अच्छा है।

यहआलू बहोत बरे बरे और बहुत सारे हैं यहां आलू का समूह है।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं।

यहां का वातावरण भी बहोत ठीक लग रहा है।

येलो कलर से कलर किया गया है यहां पे तीन--

एल_सी_डी में कस्टमर सर्विस लिखा गया है।